windows पर marceditor के संस्थापन पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगेः
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
यह tutorial library staff के लिए सबसे उपयुक्त है
आगे बढ़ने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके machine पर निम्नलिखित है
कोई भी web browser जैसे कि internet explorer firefox या google chrome
आपकी मौजूदा library में आपके पास excel spreadsheet में library records हो सकते हैं
और आपकी library अब koha library management system में migrated की जा रही है
तो सभी records को excel से marc format में परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी
यह जानना महत्वपूर्ण है कि
ऐसा इसलिए है क्योंकि koha में excel format में मौजूद data को सीधे import करने का प्रावधान नहीं है
शुरू करते हैं
excel data को marc format अर्थात dot mrc format में बदलने के लिए हम marcedit software का उपयोग करेंगे
इस सॉफ्टवेयर को संस्थापित करने के लिए browser पर जाएँ और इस url को type करें
downloads शीर्षक के साथ पेज खुलता है
current development में marcedit 70 x/macos 30 x पर जाएँ windows 64bit download पर जाएँ
हालांकि यदि आपकी machine 32bit है तो आपको windows 32bit download link पर click करना चाहिए
यह जांचने के लिए कि आपकी machine 32bit या 64bit है machine के निचले बाएं कोने पर जाएं
start icon पर click करें
ऊपर scroll करें और settings पर click करें
इन icons से system display notifications apps power पर click करें
बाईं ओर कुछ options के साथ एक और window खुलता है
about पर जाएँ और इस पर click करें
उसी पेज पर दाईं तरफ pc section में system type पर जाएँ
आपके मशीन के operating system का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा
मेरी machine 64bit operating system 64based processor है
विवरण पढ़ने के बाद window बंद करें
ऐसा करने के लिए शीर्ष दाएं कोने पर जाएं और cross चिह्न पर click करें
हम फिर से downloads पेज पर वापस we हैं
चूंकि मेरी machine 64bit है मैं 64bit download पर click करूंगी
शीर्षक के साथ एक और नई window 64bit download दो sections के साथ खुलती है
फिर मैं administrator section के नीचे download marcedit 7 link पर click करूंगी
ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी library का koha administrator निर्दिष्ट किया है
macredit _ setup64admin msi dialog box प्रदर्शित होता है
हम यहाँ 2 options देख सकते हैं
नीचे save file button पर click करें
ऐसा करने के बाद अपनी machine के downloads folder पर जाएं
यहां आप देख सकते हैं कि macredit _ setup64admin msi file सेव हो गई है
अब सेव फ़ाइल पर rightclick करें और प्रद्रशित options से install पर click करें
user account control dialog box में yes पर click करें
welcome to the marcedit 7 setup wizard नामक एक ओर window प्रदर्शित होती है
पेज के नीचे next button पर click करें
license agreement शीर्षक नामक एक ओर window खुलता है
license agreement सावधानी से पढ़ें
2 options i do not agree और i agree में से i agree radio button पर click करें
फिर window के नीचे next button पर click करें
select installation folder named नया window खुलता है
यह folder का path दिखाता है जहां संस्थापित software सेव होगा
वैकल्पिक रूप से आप इस सॉफ़्टवेयर को अपनी पसंद के एक अलग folder में संस्थापित कर सकते हैं field folder में आवश्यक पाथ टाइप करके ऐसा करें
आप browse टैब पर भी click कर सकते हैं और वांछित path का चयन कर सकते हैं
हालांकि मैं folder path को ऐसे ही field folder में रखूंगी
अब window के नीचे next button पर click करें
एक ओर window confirm installation खुलता है
अब उसी window के नीचे next button पर click करें
installing marcedit 7 window खुलता है
इसके बाद हम एक success message window देखते हैं
इस window से बाहर निकलने के लिए close button पर click करें
शीर्षक marcedit 70250 by terry reese नामक एक ओर window खुलता है
अब खुले windows को minimize करें
आप देखेंगे कि desktop पर एक shortcut बनाया गया है
इसी के साथ हमने 64bit windows windows machine के desktop पर marceditor संस्थापित कर लिया है
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project का सारांश देता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है
कृपया अपने प्रश्नों को समय के साथ इस forum में post करें
spoken tutorial project एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद